मुझे इस फोटो में व्हाट्सएप वाला कप भी दिखाई दे रहा है।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

बहोत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं।

मुझे इस फोटो में पांच का सिक्का गिरा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो --

मुझे फोटो में एक गाड़ी दिखाई दे रही है।